जो मंडप है वो रेड और गोल्डन कलर से डेकोरेट किया गया है।

आसमान में लालिमा छाई हुई है।

एक बड़ी सी कालोनी में बहुत सारे सेक्टर है।

फूलों से सजे हुए --

खराब खराब मिर्चों को अलग कर रहा है और साफ मिर्च --

जिन के कंधे पर एक स्कूल बैग है।

जो नीट आई.आई.टी. जेइ फाउंडेशन कामर्स क्लासेस सारी --

कुछ अन्य दुकाने हैं। इसमें कुछ चाय की दुकानें और कुछ अन्य दुकानें भी हैं।

टेलीफ़ोन है उनके पास में एक पेन है एक स्टेपलर है।

उसे पर वाक कर सकते हैं।

पंडाल को सजाया गया है। रंग-बिरंगे झालरे लगाई गई है। कुछ लाइटस लगी हुई हैं।

सीढ़ियों पर कुछ लोग चढ़ रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं।

नीचे बादलों की परछाई पानी में पड़ रही है।

नीचे सीमेंट के टाइल्स लगे हुए हैं।

और व्हाइट काम्बनैशन का कपड़ा पहनाया गया है। दूसरे को --